आ ये जैसे अंदर में कैलेंडर वगेरे टंगे हुए हैं।

और पीछे में पर्दा लगा हुआ है आधा खुला है।

ये मकान है इधर में और ये जैसे गेट है जो कि बंद है गेट ब्लैक कलर का गेट है और ये बाउंड्री बनी हुई है।

ये रोड है और रोड के साइड में एक मकान है कबील का मकान है और जैसे ये आगे में पेड़ लगे हुए हैं।